और मेज़ पे एक पर्दा पड़ा हुआ है जो न्न नीले रंग का है। इसके अंदर एक घड़ी लगी हुई है। दो तीन पंखे लगे हुए हैं।

इसके आस-पास बहोत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक साइकिल खड़ी है और एक डला खड़ा हुआ है। इसके आगे एक चक्का पड़ा हुआ है।

इसकी धरती वो हरे रंग की है इसके ऊपर भी एक छोटा सा मकान बना हुआ है जो बन्द प --

-- डिनगे जो बहोत ही बड़ी है और काफी खूबसूरत भी है इसके आगे भी एक मंदिर जैसी बिल्डिंग पड़ी हुई है।

एक घर है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है इसका रंग नारंगी है इसकी खिड़कियाँ काले रंग की हैं जो लोहे की बनी हुई हैं इसके आगे बहोत सारे झंडे लगे हुए हैं।

एक मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत है और काफी बड़ा है। यह काले और लाल रंग और पीले रंग का है।

न्न्न नीले रंग के हैं। इसकी खिड़कियां लोहे की बनी हुई हैं। इसके आगे एक चारपाई खड़ी हुई है एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। इसके आसपास के घर सब बंद पड़े हुए हैं।

इसके बाहर एक कार खड़ी हुई है जो लाल रंग की है। इसके बाहर बोहोत सारे गुलदस्ते रखे हुए हैं और एक म्म औरत म्म्म खड़ी --

इसके दरवाजे पे तीन गुब्बाड़े लगे हुए हैं और ये मालो से सजी हुई हैं इसके पड़ोस में एक दुकान है जो बंद पड़ी हुई है।

बहुत अच्छी जगह है इसके बीचों बीच में एक नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है।

बहोत सारी कार खड़ी हुई हैं जो सफ़ेद रंग की हैं। एक ऑटो खड़ा हुआ है कुछ आदमी उसके पास में आपस में बात कर रहे हैं।

यह एक कोचिंग सेंटर है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका रंग काला और सफेद है। इसके बाहर एक बहुत बड़ा मोटर रखा हुआ है जो लाल रंग का है।